यहां पर एक बहोत बड़ी नदी दिखाई जा रही है।

यहां पर हमें डब्बे वगैरे दिख रहे हैं एक स्विच बोर्ड दिख रहा है।

यहां पर ये लोग पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे--